ऊपर छत पर एक बोर्ड पर स्वराज राधे ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है।

उस पर एक बोर्ड लगा है।

दीवार पर एल_सी_डी और दूसरी दीवार पर--

और बहुत से पेन का बॉक्स रखा है।

साथ में बहुत सी किताबें हैं।

बहोत से पेड़ पौधे लगे है।